दूसरे बेंच पे भी एक कंप्यूटर रखा हुआ हैं सामने पानी वाला वाटर कूलर भी पड़ा हुआ हैं।

यहां पर एक फ्रिज रखा हुआ है फ्रिज के अंदर बहुत सारे चॉकलेट्स रखी हुई है डेयरी मिल्क पड़ी हुई है यहां पर --

फाइव स्टार चॉकलेट्स भी पड़ी हुई है किट कैट चॉकलेट भी लगी हुई हैं।

व्हाइट कलर के लिफाफे रखे हुए सामने एक महादेव जी का क्लनडर भी लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कैश बैक ।

वायर वगैरा भी लगी हुई हैं बहोत सारे।

पीच भी बने हुए यहां पे चीयर्स लगी हुई है एक--